और यहां पे साइड में भी रखा गया है और यहां पे भी है जो अलग-अलग--

लिए बनाया जाते थे जो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया करते--

और पानी में यहां पे तैर रहे हैं पानी है पानी में थोड़ा सा कचरा जो यहां पे हरियाली है।

यहां पे एक बड़ा सा काउंटर है जो यहां पे एस_बी_आई --

एक छोटा सा कंपाउंड मारा गया है और वहाँ पे एक --

रखे हुए हैं लगाए हुए हैं जो सूखे नजर आ रहे --

और यहां पे बहुत सारे बिल्डिंग दिख रहे है जो वाइट कलर के --

नमक है और यहां पे स्टैन्ड ये सब रखा गया है और यहां पे है तेल के डब्बे जो ऊपर सेट हैं हेर ऑइल है ।

बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं और यहां पे रेल्स भी जा रही हैं।

यहां पे एक ऑफिस की तरह है जो यहां पे दरवाजा भी है और यहां पे है एक काउंटर जो एक आदमी बैठा हुआ है कान में हेडफोन डालकर और यहां पे सामने सोफा सेट और उसके सामने भी है जो टेबल है काला कलर का और उस टेबल पे के रखा है तो यहां पे शोकैस --

और यहां पे दुकानें भी है जो चिप्स कुरकुरे के रखे हुए हैं और यहां पे ऊंचे ऊंचे गहने--